ये एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है जो कि उम् अभी अभी न्यू है और यहां पे कुछ कुछ लिखा हुआ है और बाइक्स खड़ी हैं यहां पे।

एक अं ररर रास्ता दिखाई दे रहा है जिसपे एक बिल्डिंग है व्हाइट एंड ब्राउन कलर की पेंट है।

ये एक गैरेज दिखाई दे रहा है जिसपे दो आदमी कार पकड़ के खड़े हुए हैं और यहाँं पे लाइटिंग भी अच्छी है फर्श भी बहुत क्लीन है और ये कार भी न्यू लग रही है।

और ऑयलिंग वगैरा यहाँ पे रखे हुए हैंएक टंकी रखी हुयी है गैस की औ र --

और रेड कलर का मंडप डेकोरेट किया गया है जिसपे वाइट कलर की लाइनिंग और लाइट की गयी है।

ये एक एस.बी.आई की ब्रांच नज़र आ रही है जोकि काफी बड़ा बैंक लग रहा है और काफी जाना माना बैंक ये है।

एक वॉटरफॉल दिखाई दे रहा है जिसमें दो आदमी नहा नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कु एक आंटी सब्जी बेच रहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुइ हैं। केले भी बिक रहे हैं और समान रखा हुआ है शैंपू वगैरा।